इस फोटो मे मुझे रोड दिखाई दे रही है।

एक फोटो में मुझे बोहोत सारे महिला-पुरुष दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे पत्थर की चट्टानें दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे नाव दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो मे मुझे टेबिल दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे पानी की बॉटल दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे कच्ची सड़क दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे एक नाला दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे लाइटे दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो मे मुझे बच्चो वाली गाड़ी दिखाई दे रही है।